उसके सामने एक ठेला दिख रहा है कुछ गाड़ी सामने पार्किंग लगी हुई दिख रही हैं कुछ लोग आपस में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सभी लोग बैंक खुलने का इंतजार कर रहे हैं धन्यवाद

ए_वन एन_जे_बी नामक ये पार्लर है ये पार्लर में--

एक मच्छी बाजार दिख रहा है यहाँ मच्छी बाजार में मच्बारे अपने कुछ बॉक्स में मछली बटी हुई है कुछ गिरा है या मछियो का भाव करते हुए दिख रहे है|

सवछ सर्वेसन दो हजार बाईस का यह पुलिया के नीचे में बहोत खूबसूरत डिज़ाइनिंग किया गया है|

यह सांदार दुकान दिख रही है दुकान के अंदर में कुछ अ सैलून के कुछ कोसमटिक के सामान मिलते हुए दिख रहे हैं नीचे फर्स पे बहोत ही बड़िया खूबसूरत डिजाइन की गई है|

ए_वन एन_जे_बी नामक ये पार्लर है ये पार्लर में सामने में कुछ बच्चे बैठे हुए दिख रहे हैं|

शहर का या गाँव का ऑटो स्टैन्ड है ऑटो स्टैन्ड में एक डुकर ऑटो में बहोत ही कलरफुल डिजाइन किया हुआ है कुछ लोग उसके अंदर बैठे हुए हैं|

यहाँ कुछ मार्केट टाइप दिख रहा है चारों तरफ रौसनी ही रौसनी यह मार्केट में दिख रही है धन्यवाद--